लैपटॉप वाली मशीन भी रखी हुई है कंप्यूटर ए फोटो कॉपी वाली रखी हुई है कांच के गेट हुए है और बहुत सारे जेंट्स दिखाई दे रहे है एक जेंट्स --

भी दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है इसमें बहुत कलर कउवा है और कुछ का ऐसे ही दिखाई दे रही है काली-काली मिट्टी दिख --

वाइट कलर का पेंट हो रहा है | एक टी.वी. भी दिख रही है | टीवी में कुछ फोटो दिख रहा है | बहुत सारी गाड़ी उनमे दिख रही है | बहुत सारे जेन्स उनमे --

दिख रहे हैं एक जेंट्स गाड़ी पे बैठा हुआ है | रेड कलर की शर्ट पहन रहा है ब्लैक कलर का पेंट पहन रहा है | एक जेंट्स --

मिट्टी उ भी दिख रही है | बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ऊपर बदल भी दिख रहा है |

भी दिख रही स्टील के दाने दिखाई दे रहे है और काटा भी दिख रहा है और तरबूज भी अ तरबूज भी दिखाई दे रहे है और गाजर भी दिख रहे है।

हरे कलर के कपड़े पेहेन रखे है | पेड़ो में भी दिखाई दे रहे हैं | ऊपर बदल भी दिख रहा है नीले कलर --